यहां पे कुछ एक मंदिर है । मंदिर के पास में दो लोग खड़े हुए हैं एक लोग इधर पे है उधर पे कुछ--

यहां पे कुछ फॉल्स है फॉल्स में पानी आ रहा है दोनों तरफ भी बहुत बड़ा पत्थर हैपहाड़ के जैसा है। एक लड़का इधर प कोई-

यहां पे स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल में कोई लोग तो नहीं एक ही लोग नहा रहा है इधर पे--

बहुत अच्छा लग रहा है एकदम मस्त है इधर पे कोई आदमी एक आदमी चेयर पे खड़ के चेयर पे बैठ रहा है ब्राउन कलर का चेहरा है ऑरेंज --

यहां तो बहुत बड़ा समंदर है। समंदर में तो उसके अपोजिट तो वाइटिंग ब्लैक कलर दिख रहा है पेंटिंग इंटिंग --

उधर पे तीन लोग खड़े हुए हैं एक ही लोग गाड़ी पे बैठे हुआ है। यहां पे कुछ ऑटो खड़ा हुआ है उधर पे कुछ स्टॉक पेट्रोल लाके हुए-